एक क्रेन भी नज़र आ रहा है ऊपर काफी अच्छे से एक रेलिंग नज़र आ रहा है।

शुक्र वृक्ष नज़र आ रहा है तथा यहाँ पे अन्य पौधे भी नज़र आ रहे हैं रंग कॉफी ब्लरी रंग है और नीचे काफी अच्छा सुंदर दिख रहा--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

अशोक चिन्ह नजर आ रहा है पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है बिजली का एक खंभा नजर आ रहा है तार नजर आ रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर एक तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है पेड़ नजर आ रहे हैं पौधे नजर आ रहे हैं।

किसी पार्क की तस्वीर है जहाँ पे पेंगुइन नुमा एक कचड़ा दान बना हुआ है साथ ही एक और कचड़ा दान है जो नार्मल कचड़ा दान है ओ --

ये प्रसूतिगृह नज़र आ रहा है जो की दो मंज़िला दिख रहा है।

दो मंज़िल सा नज़र आ रहा है चढ़ने के लिए सीढ़ी है बहार का रंग गुलाबी है ऊपर आसमान दिख रहा है बिजली के तार नज़र आ रहे है।